इसमें बहोत सारे झूले भी लगे हुए हैं।

यहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है।

सामने एक बोटल रखा हुआ है।

वह आदमी आसमानी कलर की टी शर्ट पहना हुआ है।

यहां सामने में माला टंगा हुआ है जो वाइट कलर का है उसके ऊपर डिजाइन भी किए गए हैं।

दुकान के बाहर कुछ दीप रखे गए हैं।

अंदर में भी एक दीप जल रहे हैं।

इसमें कुर्सी लगी हुई है जो रेड कलर की है।

टेबल के ऊपर दो कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं।

यह फल का चित्र है जिसमे बहुत से फल भी लगे हुए हैं।

दरी के बगल में अनार भी रखा हुआ है जो रेड कलर की है।

यहां पे एक टोटो है।

यहां पे दो बाइक वाला भी है।

सामने में बहोत सारे ट्रक लगे हुए हैं।

सामने दुकान में एक औरत है।

उस बाइक पे उसे आदमी के आगे एक बच्चा भी बैठा हुआ है ।

एक छोटा सा कटा हुआ नींबू भी रखा हुआ है।

इस शोरूम का कलर व्हाइट और रेड है।

यह एक छोटा सा कार्यालय का चित्र लग रहा है।

यहां पे एक ट्रैक्टर भी लगी हुई है जो ब्लू कलर की है।

यह एक मंदिर का चित्र है इस मंदिर का कलर रेड और ऑरेंज कलर का है।

सामने जाली जाली के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

स्टूडियो का कलर व्हाइट और रेड कलर का है।

इसमें एक मगरमच्छ भी है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है।

उधर बिल्डिंग में दो लड़की भी है जो सूट पहनी हुई है।

इसके ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसका नाम हीरा एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है ।

यह एक चूड़ी का दुकान है यहां पे बहोत सारे चूड़ी रखे हुए हैं।